यहां पे एक बुजुर्ग आदमी दिख रहा है और उसके घर गले में एक गमछा है यहां पे पीछे एक व्यक्ति दिख रहा है जो अपना हाथ पीछे किया हुआ है और एक व्यक्ति के हाथ में पेपर है ये--

उसके ऊपर एक बाल्टी रखा हुआ है दुकान के ऊपर दो पोस्टर दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे चेयर दिख रहे हैं।

यहां पे उसके हाथ में बोतल दिख रहा है पीछे में एक व्यक्ति और दिख रहा है जिसके सर पे गमछा पहना हुआ है।

यहां पे कुछ बिजली कॉलोनी का दृश्य दिख रहा है।

ऊपर में एक पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

कुछ टिशू पेपर रखे हुए है यहा कुछ चमच रखे हुए है टेबुल के बगल मे चेयर दिख रहे है ऊपर मे कुछ लाल रंग के लाईट जल रहा है।

यहां पे कुछ उनके हाथ में डमरू दिख रहा है और उनके गले में फ्लॉवर लगे हुए दिख रहे हैं नीचे में कुछ लोटा दिख रहा है कुछ दिये जल रहे हैं।

यहां पे कुछ कपड़े रखे हुए दिख रहे हैं और यहां बहुत सारे लोहे के डंडे दिख रहे हैं जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है।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

नीचे कुछ टंगे हुए हैं एक डायना टंगा हुआ है बगल में तीन चार स्विच बोर्ड टंगे हुए हैं यहां पे पूरा अंधेरा दिख रहा है।

ऊपर में एक डब्बा है जिसके ऊपर गैस का चित्र बना हुआ है और पीछे में बहुत सारे प्लास्टिक और लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पे एक व्यक्ति दिख रहा है जो टोपी पहना हुआ है और उसके हाथ में बुके है यहां--

पीछे में एक शटर दिख रहा है और जिसमें लोहे के डंडे लगे हुए हैं जिसमें रस्सी बंधा हुआ है पीछे में कुछ तार दिख रहे हैं कुछ प्लास्टिक रखा हुआ है।

यहां पे कुछ काले रंग के बॉक्स रखे हुए हैं ऊपर में पेपर चिपकाए हुए दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे ग्रीन कलर का चटाई बिछाए हुए हैं यहां एक व्यक्ति है जो पॉकेट में हाथ डाला हुआ है।

ग्राउंड के बीचों बीच काले रंग का टायर बहोत सारे रखे हुए हैं।

यहां एक बच्चा कैप पहना हुआ है पीछे में एक बच्चा के हाथ में लोटा दिख रहा है और यहां पे एक डंडा दिख रहा है।

राम जी का चित्र बना हुआ है यहां पर तीन चार दिए जल रहे हैं।

कुछ गुब्बारे दिख रहे हैं यहां कुछ ग्लव्स रखे हुए हैं।

टावर के ऊपर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर दिख रहा है।

जिसके नीचे एक जनरेटर रखा हुआ है जो लाल रंग का है यहां एक ट्रांसफार्मर दिख रहा हैं जिसके ऊपर बहुत सारे तार गए हुए दिख रहे है यहां तीन चार बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।